औरतों ने साड़ियां पहनी हुई हैं।

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

नदी दिखाई दे--

वो बाइक चला रहा है।

इमारत भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बड़े बड़े पेड़ मे हैं।

इस मॉल में एक दुकान का नाम अजमाल--

यहां पर एक अलमारी लगी हुई है लोहे की।

यहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

यहाँ रोड पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं।

जहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यह एक बाइक की दुकान दिख रही है इसके बाहर बहुत सारे पोस्टर लगे हैं।

उसके सामने बहुत सारी इमारतें भी दिख रही हैं।

और तीन झूमर दिखाई दे रहें हैं।

जिनमें से एक कुत्ता काले कलर का है और दूसरा कुत्ता सफेद और गोल्डन कलर का है।

मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि दीवार पर बनी हुई है।

आदमी और बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

सीढ़ियां दी गई हैं और बहुत बड़ा काँच का शोरूम दिखाया जा रहा है।

इसके ऊपर दो मंजिलाये दिख रही हैं और इसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हैं।

और बहुत सारे आदमी भी खड़े हैं।

यहाँ एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं।

इसके ऊपर एक पोस्टर लगा है।

चैक्स का कलर ग्रीन एंड वाइट है।

और यहां बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और यहां पेड़--